यह स्विमिंग पुल लग रहे नहाने का जगह है और इसमें बहुत सारा लोग नहाते भी होंगे इसमें दिख रहे हैं हरे-हरे पानी दिख रहे ब्लू पानी दिख रहे है और वाइट भी लग रहे हैं पानी में थोड़ा-थोड़ा और कांच भी बहुत सारे लगे हुए हैं।

और उधर उधर भी आदमी दिख रहे हैं। बोहोत सारा आदमी है इसमें और घर भी दिख रहे हैं हरे-हरे पेड़-पौधे भी --

बृक्ष - उरिक्ष लगे हुए हैं बेठने-उठने का जगह है और सड़क भी बने हुए हैं पतला सा और लग रहे हैं क्या घूरने का जगह है ये बहुत मस्त जगह है।

और इसमें हरे-हरे स पेड़ से भी लगे हुए हैं हरे-हरे पेड़ है वृक्ष है।